येलो कलर है बोहोत आसमान है और आसमान के पास और पेड़-पौधे के बीच में ये खड़ा है।

'' देख सकते हैं ये हेयर कटिंग सैलून है। मेंस पार्पर यहां पर एक व्यक्ति जो खड़ा है इसने येलो कलर का टी-शर्ट पेहेना है। ''

किसी के मुंह पर येलो ग्रेन कलर आप देख सकते हैं। ये व्यक्ति कैसे पानी का पाइप पास कर रहा है। मछली को साफ-सफाई देने के लिए और जीवित रखने के लिए।

और यह कैसे दांत दिख रहा है और इसने ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा है औरये जिम में है और जिम में जिम करने का ये फायदा होता है बोहोत लोग स्लिम हो जाते हैं अंदर से एकदम हार्ड होते हैं।

और इनकी पत्नी ने जो पिंक कलर की साड़ी पेहेना रखी है। इनके पीछे इनकी पतोह है जिन्होंने रेड कलर का सारी पेहेना है और इनका पोता--

अच्छे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनाने की लेकिन पूरा सब कुछ करते हैं। यहाँ पर मतलब मैंने ज्यादातर बनाते हैं और ये--